और इसके बगल में एक पलंग भी है यहाँ पे रास्ते ब --

उसके अ इसके पीछे का जो दृश्य है वो देखने वाला है बहुत अच्छे से देखते है दृश्य।

इस बोर्ड पे जिराफ़ जेब्रा दरिया घोड़ा जंगली बिल्ली कृष्णा मृगा लिखा हुआ है और भी लिखे हुए हैं।

बारहसिंघा चीत हिरयानी एमू कोसवरी पक्षी बर्ड्स ये सिंबल जो दिए हुए है मतलब अंदर में है ये जंगल का सीन है बहुत अच्छे दिख रहे है हरे-हरे --

और सजावटे भी किये गए है निचे में मगर निचे में गौर से देखोगे तो लग रहा है फूलो से सजावटें किये गए --

लीची बॉल भी लगाया गया है। सफ़ेद कलर का जो यहाँ से साफ़ नहीं दिखता है लेकिन लीची बॉल लगा हुआ है ।

ये कुछ बेचने के लिए कुछ रखा हुआ है डिब्बे में एक हरा कलर का है एक लाल कलर का है और एक सफ़ेद कलर का है।

ये सीसी ये सीसी सफ़ेद कलर का है बहुत अच्छे है बहुत अच्छे दिख भी रहे है ।

उधर से स्लिप करते हैं बहोत सारे बच्चे हैं उनके माता पिता है अ ले अ अब कलर पिच जो फिसलने वाला कलर बहोत अ --

यहाँ पे बहुत सारे गिट्टी हैं बहुत सारे लेबर लोग हैं और ये जो मशीन है वो सीमेंट बनाने के सीमेंट और गिट्टी मिलाने के काम करते है।